भारतीय पारंपरिक खाने की थाली है।

और यह एक शादी का व्यू है।

यहां पर काफी लोग खड़े हैं।

यह चमियाना ग्राम पंचायत का पंचायत घर है जिसके साथ दुकान और काफी घर है।

साथ में मशीनस भी रखी है और --